इसपे लिखा हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर --

बहुत से कमरे भी दिखाई दे रहे हैं बहुत ही अंधेरा दिख रहा है।

यह एक जिम का नजारा हैं।